यह एक फैक्ट्री हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने आते हैं यहाँ पर बिजली भी गया हैं फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती हैं।

यह एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी घुमने आते हैं अभी बहुत सारे आदमी घुमने आए हैं और ये हिपोपोटामस में झरना बनाया गया है चारो और पानी फेक रहा है और यहाँ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं।

यह लोग इंजिनियर है और यह बिल्डिंग की कुटाई कर रहे है जिससे प्लास्टर हो सके और यह पूरा बढ़ियाँ से बन सके इसलिए यह काम में लगे हुए है ।

यह रेलवे फाटक है और यहाँ बहुत आती आती-जाती रहते है यह सोनपुर जाने वाली ट्रेन होती है सोनपुर जाने वाली ट्रेन यही पर आ के रूकती है।